ये कोई शादी का फंक्शन लग रहा है।

वह उसके पास नाव वह उसके पीछे एक ब्लू कलर की पेंट सीट्स हैं।